कुछ व्यक्ति बैग टाँगे हुए दिखाई दे रहे है और वहां पर और वहां पर पाइप के खंबे भी गड़े हुए दिखाई दे रहे है धूल मिट्टी भी डली हुई दिखाई दे रही है।

और वहाँ पर यहाँ पर कोई क्रिकेट खेलने वाला है और कुछ और प्लेयर खेलने वाला मैदान डला हुआ है और कोई उसकी कुछ दुरी पर बहुत ज्यादा मकान बने हुए दिखाई दे रहे है और पेड़-पौधे भी बहुत ज्यादा लगे हुए--

यह जो पौध लगे हुए पूरी तरह से हरे भरे दिखाई दे रहे हैं और वहाँ पर बहोत ही घने पौध लगे हुए हैं और सूरज की किरने भी कोई पौध पर लग रहीं हैं इसलिए वह और ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है।

वहाँ पर पूरी तरह से पांडाल बनी हुई दिखाई दे रही है और मकान भी बने हुए दिखाई दे रहे है और वहाँ पर पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे है और पेड़ भी लगे हुए है।